कछुआ एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठा हुआ है।

बहोत सारे औरतें खड़े हुए हैं।

और बगल में बहुत सारे टाइल्स भी लगाए गए हैं।

हॉकिंस कुकर का फोटो भी चार पांच लगाया गया है उसके अंदर बहुत सुंदर सी दुकान में लाइटिंग भी लगाया गया है उसके बाहर--

बहुत सारे हरेभरे गावश है गाछ के अंदर में ही बहुत सुंदर सा घर बनाया गया है ।

नीचे बहुत सारे दराज बनाए गए हैं दराज में शीशे का लगाया गया है।

एक बस स्टॉप है बहुत सारे आदमी कतार में खड़े हुए हैं।

एक स्टेज बनाया गया है स्टेज बहुत सुंदर बनाया गया है।

बाहर तीन चार खिड़की है खिड़की मे शीशा लगया गया है।